और रोड में लोग आना जाना कर रहे है जीप है।

यह बहुत बड़ा जंगल है पेड़ है लाल मिटी है काली मिटी है नीला आसमान है।

और पेड़ भी लगे है हरे हरे लाइट के और हॉल बहुत सुन्दर बना है और उसको सजाया भी बहुत अच्छे से गया है।

यह बहुत बड़ा गार्डन है अ और हरे हरे पेड़ लगे है खम्बे है और चेयर भी है बैठने के लिए और एक बाई पानी दे रही है पेड़ को और घर भी बने है लाइट लगे है पंखे लगे है।